मंदिर की पुताई चल रही है एक लड़का हाथ में बाल्टी लेके खड़ा हुआ है ऊपर और नाग महाराज बने हुए है काले कलर के आस-पास दो शेर लगे हुए है।

यहां एक बहुत सुंदर सी बड़ी झाँकी दिखाई दे रही है जिसमें माताजी बनी हुई है दो-तीन शिव जी भी दिखाई दे रहे हैं और गणेश जी दिखाई--

कुछ प्रोग्राम की तैयारी चल रही है इसलिए डेकोरेशन चल रहा है एक व्यक्ति डेकोरेशन कर रहा है नीले और पीले कलर के बैलून लगा रहा है।

स्पीकर भी लगा हुआ है आसपास थोड़ी बहुत घास भी लगी हुई है और तीन चार सीढ़ियां दिखाई दे रही है और एक नीले कलर का पेड़--

जेन धर्म का मंदिर दिखाई दे रहा है ए-तीन मुर्तिया लगी हुई हैं भगवान की नीचे भी कुछ एक मूर्ति है लाल कलर के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ भी है बीच में भी सोने जैसे कुछ की मुर्तियां बनी हुई हैं।

जैन धर्म म-उ धर्म का तीर्थ दिखई दे रहा है बीच में बड़ी मूर्ति बनी हुई है आसपास दो थोड़ी छोटी मूर्ति बनी हुई है नीचे भी बहुत सारी मुर्तिया दिखई दे रही है। नीचे हां --

मंदिर के ऊपर पूरी लाइट से ढका हुआ है लाइट बहुत सुदर दिखाई दे रही है अंदर माता जी की प्रतिमा भी बहुत सुदर दिखाई दे रही है और कुछ गमले भी लगे है हरे हरे --

यह एक दूध की दुकान दे रही है जहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही है स्टूल दिखाई दे रहा है स्टूल पर एक लेडी बैठी हुई है जो कि दूध बेच रही है पीछे एक और व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि बिल बना रहा है।

छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है जहां पे तीन-चार लोग खड़े हुए हैं एक व्यक्ति को फोन पर बात कर रहा है जिसके हाथ पर चाबी भी है एक व्यक्ति उधर देख रहा है व्यक्ति दुकान पर कुछ ले रहा है।

स्टैशनेरी की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है शॉपकीपर उन्होंने चस्मा लगा रखा है पीछे कुछ बोटले भी दिखाई दे रही है बहुत सारी बुक्स दिखाई दे रहे है डायरी दिखाई दे रही है।